ये कोई पार्क लग रहा है।

यहां पे स्टार का सिंबल भी बना हुआ है।

दिखने से तो लग रहा है कि ये एक होटल का कोई कमरा है।

हम देख सकते हैं दो पिल्लोज भी हैं कर्टेन्स भी है।

ये इसके दो पहिए हैं और उसके ऊपर हेलमेट भी रखा हुआ है।

यहां पे फैन है लाइट है।

सीढ़ियां भी बहुत सारी है।

ये एक हवाई अड्डा है।

ये प्रिसटीन हॉस्पिटल एडवांस्ड अर्थों न्यूरो एंड ट्रॉमा केयर सेंटर में स्पेशलाइज्ड है।

और यहां पे बुद्धा की मूर्ति है।

ये बेंगलोर का कोई इलाका है जँहा पे आप देख सकते है बहोत सारे लोग है।

यहां पे आप देख सकते हैं कि एक विशाल हवाई जहाज है।

उणने के लिए तैयार है।

उसका जो टेल है ऊपर का वो रेड कलर का है।

खाली इलाका है लग रहा है जहां पे कोई मंदिर है।

आसमान भी बिल्कुल साफ है।

ये शायद कोई जू का इलाका लग रहा है।

मुसलमान यहां पे आ के अपनी पांच वक्त की नमाज अदा करते हैं।

इस नदी में बहोत सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं।

यहां पे एक बोट भी है जिसपे बहुत सारे लोग हैं।

ये शायद कोई नमकीन मिठाई का दुकान है।

एक वेंकटेश्वर की मूर्ति का एक फोटो है वो भी लगा हुआ है।

राइट साइड मे आप को एक इलेक्ट्रानिक वाच भी देखने को मिल सकती है।

यहां पे आप एक अंकल को देख सकते हो जिसेने व्हाइट और रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यहां पे हम देख पा रहे हैं बड़े बड़े झूमर भी हैं।

एडीडास और हमलेस जैसे शॉप्स भी है।

और यहां पर आप सिक्योरिटी गार्ड्स भी देख सकते हैं ब्लू कलर के ड्रेस में।

बहुत सारे लोग भी यहां पे देख सकते हैं।

ये कोई दफ़्तर है जहाँ पे तीन लोग किसी का वेट कर रहे हैं या और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं।

के ऊपर एक फायर एक्सटिंग्विशर भी है।

आप यहां पे एक नाव देख सकते हो जिसपे काफी सारे लोग सवार हैं।

इसके ऊपर लिखा हुआ है त्रिवेनी।

और कन्नडा में लिखा हुआ है त्रिवेणी चित्र मंदिरा।

एक लाल एक ग्रे और एक ब्राऊन कलर की कार दिखेगी।

यहां पे बालकनी भी है।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

यहां पे स्विमिंग पूल भी है।

स्विमिंग पूल में दो पार्टीशंस हैं एक एडल्ट के लिए है एक बच्चों के लिए है।

सामने बहुत सारी स्कूटीज रुकी हुई है एक बंदा भी है।

यहां पे बहुत सारी चेयर्स हैं बहुत सारे स्पीकर्स हैं।

लोग खाने के लिए आते हैं।

ये एक एस_बी_एम बैंक का दफ्तर है।

आपको पेस्ट्रीज स्वीट्स स्नैक्स और फ्रेश जूस मिल जाएंगे।

एक आदमी है जो बेकरी से कुछ ले रहा है।

और वहां पे तीन बैनर्स भी लगे हुए हैं।

बहोत सारे फूल लगे हुए हैं अलग अलग रंग बिरंगे कलर्स के।

ये बी_बी_एम_पी का वेजिटेबल मार्केट है।

और उसके पीछे आप देख सकते हैं बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी है।

वहां पे फ्लाई ओवर भी दिख रहा है।

और यहां पे एक एम_एल_ए का पोस्टर भी लगा हुआ है बड़ा वाला बिलबोर्ड --